और उस मंदिर् के बगल का दीवार आ रंग हरा रंग का है और मंदिर के बगल मे बहुत लंबा सीडी है जो की मंदिर छत की तरफ जा रहा है और वहाँ एक दुकान भी है।

पिक्चर मे एक जिम का सेटअप दिख रहा है जहा पे वूडन का फ्लोर फ्लोरिंग किया हुआ है और यहा पर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और लेग्स मारने का सारा इक्विपमेंट्स रखा हुआ है।

और दूर दूर में पहाड भी दिख रहे है जो की बहुत हरे भरे लग--

यह एक स्टाचू का शॉप लग रहा है जहाँ पे सारे स्टाचूस एक साथ सजाके रखे हुए है उनके सामने बहुत सारे फूल रखे हुए है येल्लो अँड ऑरेंज कलर के।

और पीछे एक सीडी है जो की ऊपर की तरफ जा रही है और बाहर की तरफ एक बच्चा चल रहा है और एक आंटी येल्लो साड़ी पेहन के खड़ी है।